यहां पर दो काउंटर लगे हुए हैं।

फ्लोरिंग टाइल्स की की हुई है।

इस पार्टी हॉल के बाहर दोनों तरफ कई सारे सजावट के सामान रखे हुए हैं।

उसने काले कलर की शर्ट पहन रखी है और सर के ऊपर रुमाल बांध रखा है।

इस प्लेग्राउंड में काफी सारे बच्चे और टीचर्स खड़े हुए हैं।

इस शोरूम के अंदर बहुत सारे सेल्फ बने हैं।

यह किसी स्टेशन का प्लेटफार्म है जो कि काफी खाली नजर आ रहा है।

यहां पर एक साथ तीन बिल्डिंग है।

यह एक पुलिस स्टेशन है जिसकी बिल्डिंग का कलर सफेद है।

पार्क के बाहर गेट लगा है जो कि काला कलर का है और दोनों तरफ खुला हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर का इंटीरियर येलो और ऑरेंज कलर का है।

ये एक बैंक्वेट हॉल है बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर पिंक कलर के परदे लगे हुए हैं।

दाहिने तरफ बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

यह एक ढाबा है इस ढाबे के ऊपर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

रैक के ऊपर एक छज्जा बना हुआ है जिसके ऊपर कई सारी तारें रखी हुई है।